नीचे कुछ लोग बैठे नजर आ रहे हैं और यहां पर सामने लाइट भी जल रही है उप्पर यहां पर --

घर दिखाई दे रहा है जहां पर--

एक गैरेज दिखाई दे रहा है जहां पर कार रिपेयरिंग करता एक व्यक्ति दिख रहा है यहां पर बोर्ड लिखा है।

इस तस्वीर में यहां पर सामने एक शोरूम दिखाई दे रहा है जहां पर मारुति सुजुकी लिखा है।

इस इमेज में सामने दीवार पर यहां पर एक स्टार बना दिखाई दे रहा है।

इस इमेज में सामने यहां पर एक डॉक्टर का केबिन दिखाई दे रहा है।